यह एक स्कूल का लॉबी है जिसके लॉबी में बहुत सारे बेंच लगे हुए है।

एक बिल्डिंग है जो सफ़ेद रंग की है जिसपे सदर अस्पताल लिखा हुआ है।